ये एक सर्विस सेंटर खड़ी है।

इसका नाम श्रीराम बॉयज होस्टल है।

यहां पर बहुत शांति दिख रही है।

एक बस नजर आ रही है।

काफी सुंदर प्रतिमा नजर आ रही है।